डार्क ब्लू कलर का है ये।

जिसके आगे की और काफी सारी सीढ़ियां है औ ये पूरा मंदिर --

जो कि काउंटर के पास खड़ा हुआ है काउंटर पे हाथ रख के ।

जिसके अन्दर एंट्री गेट पे घुम्मच टाइप की डिज़ाइन बनी --

और रेड कलर की और ब्लैक कलर में है।

अ क्रीम कलर के है और वाइट वाइट कलर के है और --

यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है।

इसके ऊपर मैन के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट और ब्लू कलर --

यह कपड़ो की शॉप है जहाँ पर --

इन्होने एक ने वाइट पहना हुआ है और एक ने --

यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है।

और एक बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक ग्रीनिश गार्डन दिखाई दे रहा है जि --

यहाँ पर एक ग्रे कलर की सड़क बनी हुई है।

जिसके ऊपर दिशेस रखी हुई हैं रेसिपिस बताई गयी हैं।

और एक रे वाइट कलर की शर्ट मेन्स के हाथ में एक पॉलिथीन है।

सभी जगह पर अलग-अलग कहीं शैंपू कई साबुन।

लोग साइड में कुछ पौधे लगाया हुआ हैं फिर उसके ऊपर --

और जहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है आगे की ओर।

जो की ब्लू कलर के है।

यहाँ पे एक वाइट कलर की बिल्डिंग है।

उसके आगे की और एक बंदा बैठा हुआ है।